यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ बहोत बड़ी दुकान रखी हुई है जिसमे पुस्तके पेन दिखाई दे रहा है।

एहा पर ऐसी लगा हुआ है एहा पर बहोत सारी चीज़े रखी हुई।